है एक ये रेड कलर में बस खड़ी हुई है और एक वाइट कलर में रोड के ऊपर बस खड़ी हुई है।

गाड़ी को पार्क कर सकते हैं किसी भी और मोटर बाइक को बाइक को रिक्शा को यहां पे पार्क कर सकते हैं और इसके --

दरख्त लगे हुए हैं ग्रीनरी है हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं प्यारे लग रहे हैं।

और यहां पे ग्रीनरी भी है दरख्त भी लगे हुए हैं जो भी वो भी बहोत प्यारे लग रहे हैं।

और जो है इसके अलावा काफी औरतें हैं लड़के हैं पंडित हैं जो कि खड़े हुए हैं--

और जो बहुत प्यारी लग रही है और जो पानी है यह इंसानी जिंदगी के लिए बहुत मुफीद और फायदामंद है।

बच्चों का एंजॉयमेंट करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है ये पार्क वगैरह में पाई जाती है।

और इस शॉप में काफी ज्यादा जो हैं चीजें पाई जाती हैं और जो बिल्डिंग है ये भी बहुत अच्छी और प्यारी लाग रही है।